और पेड़ दिखाई दे रहा है बगल में एक खंबा दिखाई दे रहा है जोकि छोटा है।

और यहां पर कुछ बोर्ड में नीचे लिखा हुआ है जोकि साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा है।

पेट्रोल पंप की जो मशीन होती है उसे खोल रहा है।

यहाँ पर दूसरा आदमी पेट्रोल पंप का जो मशीन होता है उसको हाथ में लिये रखा है।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

पीला सरिए पे टंगा भी है और दूर में भी काफी आदमी दिख रहे हैं।

काफी सारे छोटे छोटे बॉम्ब दिखाई दे रहे हैं जो कि इसमें बलफ रखे हुए हैं।

और काफी सारे बॉक्स दिखाई दे अगल बगल में भी काफी सारे बॉक्स हैं।

यहां पर काफी सारे बड़े बड़े चट्टानें दिखाई दे रही हैं।

उसके घर के उपर एक झंडा लगा हुआ है जो कि भगवा कलर है।

दो तारे दिखाई दे रहे हैं एक तार मोटी हुई है।

दूर खूब दूर पेड़ भी दिखाई दे रहा है नीचे घास भी दिखाई दे रही हैं।

और यहां पर कुछ परफेक्ट प्लस लिखा हुआ है जोकि बोर्ड पे लिखा हुआ है बगल में।

और यहां पर छोटा सा एक कुछ डिब्बा रखा हुआ जो कि घर के आगे रखा हुआ है।

एक महिला दूर पे खड़ी हुई है एक ड्राम बड़ा सा वहां पे पीछे दिखाई दे रहा है जोकि छत के ऊपर है।

तारे भी दिख रही है एक मोटी सी एक बगल में बंबू दिखाई दे रहा है।

यहां पर काफी सारे छोटे छोटे ए_सी दिखाई दे रहे हैं लगे हुए।

यहां पर बाल्टी भी रखी हुई है जो कि यहां पे एकदम आगे रखीं हुई है।

और नीचे एक छोटा सा पत्थर है जो की अंदर जमीन में रखा हुआ है।

पीछे छोटे छोटे ईंटे दिख रहे हैं जो की गोल साइज में रखे हुए हैं।

और यहां पर साइड में छोटे छोटे बॉक्स रखे हुए हैं जो की कपड़ों का है।